टेंट सफेद कलर का है।

न्यूजपेपर रखा है और शीशा है लगा हुआ।

यहां पे पांच छे लोग खड़े हुए है लाइन में।

बुलेट स्कॉर्पियो और स्प्लेंडर खड़ी है काले रंग की।

यहां चार पांच बच्चे हैं इन्हें स्कूल की ड्रेस पहनी हुई है।

और साइड में रेलिंग लगी हुई है उसके बगल में दो आंटी अंकल अपना बैग उठा के आ रहे हैं।

और उसके आगे बहोत सारे लोग जा रहे हैं।

और ये ऊपर जा रहा है। उसने सर पे लाल का दुपट्टा बांध रखा है।

और वहां पर बहोत सारे लड़के खड़े हैं।

और एक सफेद कलर की लाइट है।

उनके पीछे दो तीन पेड़ है हरे कलर के--

तीन प कॉलम है जिनपे बहुत सारी चीजें रखी हुई हैं।

और शीशी में शीशे के अंदर भी रखे हुए है।

और यहां पे एक बै बोर्ड लगा हुआ है जिसपे लाइट जल रही है पेट्रोलियम की।

वाइपर उ ऊपर उठा दिए--

और यहां पे हरी-हरी झाड़ी बहोत सारी नीचे चट्टानें हैं।

और एक स्टील की लक डंडी है उसके ऊपर टिन है।